यहां पे एक हाल बना हुआ है।

यहाँ पे आसमान दिखाई दे रहा है।

और यहां पे कुछ बोट वगैरा रखी हुई है एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने मास्क लगाया है।

एक म म महल टाईप का बना हुआ है एक बिल्डिंग बनी है जिसमें सफेद कलर से पे --

ग्रीन ब्लू येल्लो कलर के लाइटस हैं छोटे छोटे और यहां पे दो पंखे लगे हुए हैं क्रीम कलर से।

और यहाँ पे आशमाँ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे आसमान दिखाई दे रहा है और एक मेला टाइप का लगा हुआ है यहाँ पे मतलब कि बहुत सारी दुकान लगी हुई है यहाँ पे --

तो कुछ लोग यहां पे सफेद कलर की ड्रेस पहने हुए हैं कुछ लोग यहां पे काले कलर की ड्रेस पहने हुए हैं।

केक का मेहरून कलर है बिस्किट का भी मेहरून कलर है।

काफी सारे बिस्किट रखे हुए हैं और बहुत सारी टोफिया डली हुई है यहां पे बहुत प्यारा लग रहा है केक ऐक चेर भी रखा हुआ है।

यहाँ पे आसमान दिखाई दे रहा है।

और यहां पे कुछ झूले बने हुए हैं चकरी वाले गोल गोल घूमने वाले झूले बने हुए हैं।

यहां पे एक मेला टाइप का लगा हुआ है काफी सारी शॉप है।

यहाँ पे आसमान दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक साइड में बिल्डिंग बनी हुई है।

इसमें बाहर से एक गेट लगा हुआ है कांच वाला गेट लगा है।

और एक पीछे गार्डन टाइप का दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पे कुछ पत्थर लगे हुए हैं यहाँ पे पत्थर टाइप की चट्टाने हैं यहाँ पे --

भारत माता बनी हुई है सौरमंडल बना हुआ है भारत के कुछ नक्शे बने हैं।

और यहां पे ना दो चेयर डली हुई है।

और आजू बाजू में पेड़ लगे हुए हैं साइड में कुछ पत्थर रखे हुए हैं और पूरी तरह से पैक है ये।

और यहां पे तीन कलर की गा तीन कार खड़ी हुई है जिनका सफेद कलर है।

यहां पे रोड का कुछ काम लगा हुआ है और तीन कार खड़ी है सफेद कलर की --

शॉप में कुछ यहां पे कपड़े टंगे हुए हैं एक पिंक कलर की फ्रॉक टंगी हुई है और बहुत सारे यहां पे कपड़े रखे हुए हैं कबड में।

और यहां पे गेट लगा हुआ है जिसमें सफेद कलर से पेंट है यहां पे मूर्ति रखी हुई है।

और यहां पे फूल लगे हुए हैं फूल का कलर है ऑरेंज यहां पे गेंदा के फूल लगे हुए है।

क क्रीम कलर पेंट है और ऑरेंज कलर यहां पे बहुत सारे लोग यहां पे खड़े हुए हैं।

कुछ लोग ऊपर खड़े हुए हैं छत के और कुछ लोग नीचे खड़े हुए हैं काफी सारी मात्रा में लोग हैं यहाँ पे --

और बहुत सारी आपकी कुर्सियां डली हुई है कुछ कुर्सी का कलर है काला कुछ कुर्सी का कलर है क्रीम ।

यहां पर एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसका क्रीम कलर का पेंट है ऊपर बनी हुई है दिखाई दे रही है आसपास में पेड़ लगे हुए हैं।

प्यारा सीन दिखाई दे रहा है आजू बाजू में पेड़ लगे --

और ऊपर बोर्ड पे स्टूडियो का नाम लिखा हुआ है।

अ मतलब एक फ्लैग बना एक झंडा लगा हुआ है जिस पे तीनों कलर है।

और यहाँ पे सफेद कलर के टाइल्स लगे हुए हैं।

और एक डीब्बे में फुल्की दिखाई दे रही है।

जहाँ खड़े होकर हम देख सकते हैं समुद्र का पानी नीला दिखाई दे रहा है।

यहां पे सफेद कलर से पेंट है सब्चड हैं और यहां पे रेड कलर की कुछ चुंगी टाइप की लगी हुई है।

और अंदर एक अंकल बैठे हुए हैं और एक लड़की खड़ी हुई है।

और यहां पे दीवार का कलर है क्रीम कलर से पेन्ट है और यहां पे --

ब्राउन कलर का एक कबड रखा है।